यह रोड के किनारे बहुत सारे आदमी खड़े हैं दो बच्चे एक बच्चे के हाथ में थेला --

यह एक सब्जी मण्डी है यहाँ पे सभी प्रकार की सब्जी मिल जाते हैं एक आदमी सब्जी बेच रहे हैं बैठकर और बगल के इसके बगल में एक आदमी खड़े हैं और सब सब्जी कट टोकरी में सजाकर रखे गए हैं।

यह बच्चो की स्वीमिंग पूल है यहाँ पे बच्चे स्लीपिंग करते है उसमें चढ़ते है तो नीचे पानी के पास आके गिरते है इसमें बच्चे खेलने में बड़ा मजा आता है।

ये लोग पहाड़ की झाया के पास खड़े है पानी ऊपर से घेर रहा है और यह बहुत ठं ढी जगह है और यहाँ हरे-भरे --

यह बहुत बड़ा तालाब है इस तालाब में बहुत गहरे पानी हैं और इस गहरे पानी के बीच में बहुत सारे बत्तख तैर रहे हैं और यह ग्राउंड किये गए हैं इसके बगल-बगल में लाइट भी लगाए गए हैं।

और तो और बहुत सारे टावर का खुट्टा नजर आ रहे --

ऐ प्रवेश द्वार होके जाना पड़ेगा ।